एक आदमी रास्ते में झाड़ू लगा रहा है।

एक काउंटर पर पिज्जा लिखा हुआ है और एक काउंटर पर मद्रासी डोसा लिखा हुआ है।

लाइटें तारों की तरह चमक रहे हैं।

एक जिराफ का पुतला बना हुआ है और एक दरियाई घोड़े का पुतला बना हुआ--

कमरे में एक बाल्टी में बहुत सारे छाता रखे हुए--

के अंदर एक सिलेंडर और एक गैस चूल्हा रखा हुआ है।

एक कार का आगे का बोनेट खुला हुआ है।

चित्र में हमें किसी मस्जिद का चित्र दिखाया गया है।

बिल्डिंग के ऊपर से बहुत सारी स्लाइडे बनी हुई है।

मॉल के छत के ऊपर बहुत सारी लाइटें जल रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाया गया है।

इस चित्र में हमें किसी रेस्टोरेंट का चित्र दिखाया गया--

ए और एक स्कैनर भी रखा हुआ है।

मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा कछुआ बैठा हुआ है।

कछुए के ऊपर शरीर पर बहुत सारे चिटके हुए दाग बने हुए है।

एक आदमी ऑटो रिक्शा के पास बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक किला दिखाया गया है।

एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है और--

इस चित्र में हमें सब्जियों की दुकान दिखाई गई है।

इस रेस्टोरेंट में एक गेट लगा हुआ है जिस--